मंदिर है यहाँ पे ढ़ेर दू-- ढ़ेर सारे लोग आते है बहोत दूर दूर से आते है कितने सारे लोग जो दिखने मे बहोत अच्छे लग रहे है यहा पे जितना ढेर सारे लोग आए है यहा देखिये मंदिर जो है।

यहाँ पर सभी जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।

बस लगे हुए है जो देखने में बहुत अच्छा काला रंग का और देखिए कितना अच्छा से लाइट और लगाए हुए हैं ये देखने में बहुत अच्छा रंग अगर डबल ए_सी वाला बस है ये देखने में डबल सीट भी है इसमें ऊपर की ओर लेट कर भी जा सकते हैं सो कर भी जा सकते हैं।

जो बस बहुत ही अच्छा है कलर भी बहुतअच्छा है सामने वाला सीट भी बहुत अच्छा है यहाँ पर यहाँ पर ये महसूस होंगे--

ये टायर बनाए जा रहे हैं जो ट्रैक्टर के टायर जो की अभी बना ही रहे हैं जो देखने में कितना अच्छा लग रहा है| अभी इसके साइड में जिम जिम का लगता है| फैक्टरी है यहाँ कोई चीज का | यहाँ यहाँ ढेर सारा लाईट लगाए हुए हैं।